टेबल पर एक केक रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक काउंटर दिखाई दे रहा है एक आदमी काउंटर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे तार फैंसिंग दिखाई दे रहा है। तार फैंसिंग के अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है।

ए एक लैपटाप भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है। एक बिल्डिंग बहोत ऊँची है।

पिचकारी भी टंगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक दीवाल पर गोयल डिमांड सेन्टर श्री गौर निताई जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

और फ्लावर्स की लड़ियों से सजावट भी की गई है। मोटर साइकिल भी रखी हुई दिखाई दे रही है। एक लकड़ी की सीढ़ी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।